आ और हम लोग के इस जमाने में युनिक ही है क्योंकि बहुत खूबसूरत लग रहा है बहुत टेस्टी लग --

सावन मेला लगा है जो की इसमें ढेर सारा महिला लोग हैं जो अपना जो भी काम उम कर रहे हैं ये लोग और आँ इधर साइड में भी बूढ़ी दादी खड़ी हैं और जेन्ट्स लोग भी हैं लेडिज भी हैं|

जो कि सब लोग देखने के लिए ये मेला आए हैं लोग और बुद्ध भगवान का दर्शन कर रहे है लोग जो कि बहोत अच्छा लग रहा है यहाँ का सीन देख --